ये जो भाई इतने अच्छे तरीके से कर रहै है जिसके इसके शरीर फिटनेस का बरकरार रहैगा --

और यह पूल बहुत ही बड़ा पुल है।

जो क्रिकेट खेल रहै हैं और ये क्रिकेट खेल करके एक बहुत ही अच्छे होनहार काबिल बच्चे बनते हैं।

हर अलग-अलग काम होते हैं जहां पर --

और यहाँ बहुत ही ज्यादा मात्रा में समान फल बेचे जा रहै हैं जो बहुत ज्यादा अच्छे हैं।

जो देखने में बहुत ही सुंदर है इस बगीचे में बहुत सारे पेड़ लगे हरे -भरे हैं।

न जाने कहीं ट्रॉफी भी यह आदमी जीते होंगे।

और हमारे लिए ऑर्डर करने पर खाने-पीने की चीजे दुकान पर उपलब्ध हो जाती है और इस दुकान में बहोत सारे--

यहाँ पे कुछ लोग खाना परोस रहे हैं।

यह कोई एक कार्यालय है जो देखने में बहुत ही अच्छा है यह कार्यालय--

यह हटिया देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है।

यह एक खण्डारा है जो देखने में बहुत ही--

यह खण्डारा देखने में बहुत ही बड़ा लग रहा है।

यह एक सैलून है जो देखने में बहुत ही सुंदर है।

और यहाँ पे बहुत सारे बच्चे अभी भी पढ़ने के लिए आ रहे हैं और न जाने और बहुत बच्चे यहाँ पे पढ़ने के लिए आते होंगे।